यहाँ एक बड़ी सी नदी दिखाई दे रही है।

पत्थर और चट्टानें दिख रही है बड़ी-बड़ी --

यहाँ एक बहुत बड़ा -सा मैदान दिख रहा है जिस पर सूरज की पीली रोशनी पड़ रही हैं ।

यहाँ एक बड़ा-सा हॉल दिख रहा हैं ।